यहाँ पे कुछ पेड़ दिख रहे हैं एंड व्हाइट कलर का मस्जिद दिख रही है एंड कुछ घर भी दिख रहे हैं एंड यहां रोड में कीचल है आसमान भी दिख रहा है।

फर्श दिख रहा है एक आदमी साइड में खड़ा है और कुछ है।

यह एक जंगल है जंगल के अंदर से रोड गई है रोड टू के बाजू मे एक टू व्हीलर खड़ी है और सूके-सूके और हरे व बड़े पेड-पेड़ दिख रहे हैं।